इस चित्र मे सामने नीला असमान और हरे हरे पेड दिखाई दे रहे है। नीचे कि तरफ शेड डला नजर आ रहा है। साइड मे एक खंबा दिखाई दे रहा है।

लाल रंग से महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल लिखा--

हे चित्र मारुती सुज़ुकी अपेर्णा का अरेना का दिखाई दे रहा है नीले रंग का काँच की काँच की खिड्किया लगी है और नीले रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़े बड़े हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है और लाल रंग की कुर्सियां रखी जो बहुत सूंदर लग रही है।

चित्र मे एक भगवान कि मूर्ती दिख रही है हरे हरे फूलों से नाग नागो से इसको सजाया गया है पीछे के तरफ भी हरे और नारंगी फुल लगाये गये है साम पिछे थोडा आसमान भी दिख रहा है।

दूसरा गेट भी कत्थयी रंग का दोनो खिडकी एक जैसी बनी हुई है। सामने रेलिंग लगी हुई है। जो बहुत सुंदर लग रही है।

स्टेचू दिख रहा है और चित्र सफ़ेद रंग का है। पीछे नीला आसमान दिखाई दे रहा है और हरे हरे पेड़ लाल रंग का लिखा हुआ है।

इस चित्र मे पिछे नीला आसमान हरे हरे पेड सामने एक मुर्ती दिखाई दे रही जो बहोत सुंदर लग रही है।

सामने की तरफ बहुत अच्छी लाईटे लगी है चित्र बहुत अंधरे से लिए लगे है सामने एक टेबल रखी दिखाई दे रही है।